और दीवाल शीशे का है इसका.

यह एक मलेट्रि का आवास या ऑफिस कुछ लग रही हे।

यह एक बार ऐंड रेस्टॉरेंट है.

जहां पे ईस्टील कलर का सीढी में साइड में दिया हुआ है.

नया साइकील लग रही है जिसमें रेपर वगैरा लगे हुए हैं.

यहाँ पे एक हुंडई कलर की कार दिख रही है.

यह एक गेट दिखाई दे रही हैं गार्डन लीव लिखा हुआ है.

और तीन रंग का झंडे के माफिक बेलून को बनाया हुआ है यहाँ पे.

यहां पे ढेर सारे बड़े से लेके छोटे साइकिल तक खड़ी हुई है.

यह कोई मन्दिर या कोई शोभा यात्रा लग रहा है जहां पे --

यहां पे किसी छत का ढलाई हो रहा है जो की सात आठ आदमी ढलाई करने में जुड़े हुए हैं.

और एक साइकिल इस्टैंड में खडी़ हुई है बीच में जो की ब्लू कलर का ब्लू एंड ब्लैक कलर का सीट है उसका --

शैंपू के डिब्बे रखे हुए हैं.